सर्कल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं कुछ दूरी पर एक टावर दिखाई दे रहा है टावर के लगा हुआ दिखाई दे रहा है सर्कल की पट्टी काली और पिली --

और जो सामने एक व्हाइट कलर की बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| नीचे एग्जिट कार्ड दिखाई दे रहे हैं| सामने हरी-हरी घास दिखाई दे रही है| एक सीमेंटेड कुर्सी दिखाई दे रही है।